और कुछ हरे पेड़-पौधे भी दिख रहे और--

हरी जैकेट पहने हुए हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ हैऔर --

सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं और एक सफ़ेद रंग की--

इस इमेज में दो लाइट के खम्बे दिख रहे है और सामने लाल रंग की रोड भी दिख रही है और --

बैग भी रखा हुआ है और कुछ प हाफ पर्दे भी रखे हुई है।

और यहाँ यहाँ जमीन मे हरी घास भी दिख रही है और लाल मिट्टी भी दिख रही है।

इस इमेज मे एक राखी की शॉप दिख रही है और बहुत सारी राखियाँ भी रखी हुई है एक--